एक महाविद्यालय है। महाविद्यालय के सामने बड़ा सा मैदान है। मैदान में हरे घास जमे हैं और सारे बच्चे जो पुरे मैदान में बैठे हैं खड़े हैं।

गाड़िया खड़ी है कार खड़ी हुई है अगल-बगल हरे पेड़-पौधे है बादल सफेद --

कुर्सियाँ लगी है लगी हुई है जो बैठी हुए एक आदमी जो खड़ा हुआ है अगल-बगल कुत्ते बैठे हुए है अ ओवर ब्रिज बना हुआ है सामने पेड़-पौधे भी है बदल सफेद है।

एक ओवरब्रिज बनी है स्टेशन है जिस स्टेशन पर ओवरब्रिज बना हुआ है।